मॉल है मॉल में बिस्कुट वगैरा सब कुछ मिलती है यहां पर पार्ले-जी बिस्कुट दिख रही है और भी वगैरा-वगैरा बहुत सारी बिस्कुट रखी हुई है।

स्वच्छ जमुई सुन्दर जमुई वार्ड क्रमांक अठारह आनंद नगर यातायात नियमों का पालन करें नगर परिषद् जमुई।

बाबा भोलेनाथ का मंदिर है जिसे बहुत ही उम अच्छे से सजाया गया है नीचे टाइल्स लगी है उसके ऊपर चादर बिछाई गयी है।

इधर एक गाड़ी खड़ी हुई है वह चालू है नई है फूल-माला से सजी है बिजली के खम्बे लगे हुए है बिल्डिंगे बनी हैं।